बहुत बड़ा सा शोरूम है वहाँ बाहर में बहुत सारे मोटरसाइकिल लगे हुए हैं यामहा का शोरूम दिखाई दे रहा है की यामहा का शोरूम है ये।

और लाइट भी जल लहा है नीचे का भी नीचे लग रहा है कि कालीन-उलिन बिछा है कि फर्श है ।

ये बस स्टैंड टाइप का नज़र आ रहा है और छोटे-छोटे गाड़ी जो है नज़र आ रहा है और एक बोर्ड सा नज़र भी आ रहा है।

फिर नदी भी है उ नदी नहीं है तालाब-उलाब है।

सीढ़ी वाले जो वो अपना डोर नजर आ रहा है ।